हमें एक बहुत बड़ा मॉल हरे जिसमें बहुत सारे लाइट मन लगी से और डेकोरेट की से --

बहोत सारी ऐसी सब्जियां लाइन से रखी गई है।

चीजें भी है जो रखे गए हैं कांच के अंदर टेबल पर रखे गए फल फूल भी रखेगा गये हैं।

ये चित्र में पोस्ट ऑफिस का--

और डब्बा डब्बा में खिलौने खिलौने दिखाई दे रहे हैं।

और एक मूर्ति बनी हुई है बीच में और एक अ फुब्बारा जैसा बनाया हुआ है इसमें--

होटल को पूरा लाइटों से डेकोरेट किया गया है।

नीचे में नदी की ओर जा रहे हैं।

और नीचे व्हाइट कलर टाइल्स लगी हुई है।

बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग इमारतें दिखाई दे रही हैं।